भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में मुरली ली हुई है और उन्होंने वर्णमाला धारण की हुई है।

जीन श्वेताम्बर सोसाइटी लिखा हुआ है।

यहां टमाटरों का रंग अलग-अलग है और देखने में ये काफी अच्छे लग रहे है फ्रेश हमें नजर आ रहे है सारे टमाटर।

और आजु-बाजू हमारे लिए कुछ औ प्रतिमाएं दिखती है जिनमें से एक पंडित जी है जो हाथ में लोटा लिए हुए है बाजू में भी एक प्रतिमा दिख रही है।

इस पिक्चर में हम एक लड़के को देखते हैं जो की येलो कलर की शर्ट पहने हुए है।

इस पिक्चर में हमें बहुत से पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं और इस ग्राउंड में हमारे लिए बहुत सारी घांस भी नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमारे लिए एक तालाब नजर आ रहा है और उसके ऊपर एक हम पुल देख सकते है।

जिनमें येलो कलर के रेड कलर के व्हाइट कलर के कुछ बैलून हमें दिख रहे हैं।

जो की रेड कलर की है और वो घर है वो भी रेड कलर का है इसके बाजु में एक अंकल आ रहे हैं जो की अपने सिर पर हैट लगाए हुए हैं।